उसके पीछे लाल कलर का अपन एक कपड़ा पड़ा हुआ है।

बिल्डिंग के पीछे हरे कलर के दो पेड़ हैं।

जोकि एक अम्बैसडर है जो सफ़ेद रंग की है।